ये एक क्राशन किराने की भी दुकान हैं।

ये एक घड़ियों की दुकान है चश्मा भी पड़े हैं अंदर लाइटें भी जल रही हैं एक अकाउंट पे बैठा है एक आदमी बाहर बैठा है शाम--

और एक बाइक भी खड़ी है आगे दुकान के शटर खुला है दुकान का और बहोत बड़े बड़े गाड़ियां भी पड़ी है ये गाड़ियां की दुकान है एक दिन का दृश्य है।

ये एक जंगल में तालाब है आसपास पाखर है और एक आदमी खड़ा है एक लेडिज बैठी है एक लड़की बैठी है एक आदमी और बात कर रहा है।

तोफ़ भी लगी हुई है रोड भी चल रही है आगे से--